हाथ एक इसके ऊपर एक नीचे है पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है गले में एक गोल्डन कलर का चैन दिख रहा है।

रेड कलर की भी चेरी हैं कटे हुए गोल भी है एक चम्मच रखा हुआ है जो स्टिल का है।

यहाँ पोखर सा बना हुआ है । जिसकी साइड मे पक्के की दिवार है । दिवार मे हल्का पिंक और ग्रीन कलर है साइड मे आंगना सा दिख रहा है । जिसमे बहोत सारी रेड कलर की पत्थरे हैं ।

कुछ लड़का लड़की लोग बैठे हैं | एक लड़की ने येलो कलर की जम पर वाइट ओढनी वाइट पजामा पहना है ।

बहुत बड़ा सा अंगना है जो कि काले रंग का है जिसमे एक गोल सा ट्रेन की पटरी के जैसा बना है उसके ऊपर से एक छोटा सा ट्रेन जा रहा है जो के पिंक और ब्लू कलर की है जिसके चक्के में येलो और ब्लैक कलर लगा है।

बहोत सारे कलर हैं ऑरेंज है रेड है ब्लू है ग्रीन है अ ब्लैक है वाइट है और इस दीवार का कलर पिंक दिख रहा है ऊपर में वाइट है। दो पाइप लगे हुए हैं। एक ऑरेंज एक --

सामने में कुछ रोड कुछ पट्टे पड़े हुए है दो आदमी खड़े हुए हैं एक ने रेड शर्ट और ब्लू पैंट पहना है दूसरे ने ब्लैक व्हाइट रेड कलर की जैकेट और ब्लैक पेंट पहना है दोनों के सर में टोपी --

जिसमें व्हाइट कलर की डिजाइन व्हाइट में लिखा है कुछ नंबर है सामने में एक बूढ़ा का सर दिख रहा है साइड मे एक आदमी है जिसके पीछे ग्रीन कलर का बैग है एक बाइक खड़ा हुआ है वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई है।

आसमान व्हाइट कलर का है। घर के अंदर में अंधेर है। इस साइड घर में एक क्-खटिया रखा दिख रहा है उपर एक म् कागज का टुकड़ा लगा है।

और नीचे पे पक्का रेड दिख रहा है| दूर में एक लाइट दिख रही है| ऊपर स्कालेड बने हुए --

एक बोहत बड़ा सा लम्बा सा पानी बह रहा है। ऊपर से पानी गिर रही है व्हाइट कलर में। नीचे में पानी ब्लैक एन्ड ग्रीन है।

ऊपर कुछ लोग खड़े हुए है कुछ ने गमछा पहना है कुछ ने हापीट पहना है कुछ ने गमछा ओड़ा है कुछ ने सर पे --